पेट्रोल पंप के अं भीतर एक पेट्रोल वाली गाड़ी खड़ी है जिससे पेट्रोल खाली किया जा रहा है यहां पे एक साइकिल भी खड़ा है।

एक बहुत बड़ी दुकान है इस दुकान में कई रैके बनी हुई हैं।

यह एक गोडाउन है। गोडाउन में आलू रखा है।

यह एक नर्सरी है नर्सरी में बहोत सारे पौधे रखे हुए हैं बहोत सारे छोटे पौधे को प्लास्टिक जार में रखा हुआ है।

दीवार उजली है दीवार पर एक पे महिला के चित्र बनाया गया है डो जो डांस कर रही है।

यह एक सरक है सरक के किनारे बहोत सारे घर बने हुए हैं।

पोस्टर पर वरुण वर्मा कुणाल वर्मा लिखा हुआ है।

दुकान में बहोत सारे बांस से बनी हुई समान रखी हुई है।